और आसमान का रंग नीला और सफेद है।

कैंटीन पे दो लोग खड़े हुए है जिसका काउंटर सफेद रंग का है।